यहाँ दिख रह-रह-रह-रहा है की-की और यहाँ छत डली हुई है जो मेहंदी कलर की दिख रही है और गुलाबी कलर --

दे रहे-रहे-रहे-रहे हैं और-और एक लड़की है जो बैठी है उसने लड़का का कपड़ा पहन रखे हैं पंखे दिख रहे-रहे-रहे हैं उसके ऊपर कच्चा सफेद कलर का दिख रहा है पंखा काला कलर का नजर आ रहा--

यहाँ एक गाड़ी का गैरेज है सात तीन चार गाड़िया रखी हुई है दो गाड़ी ऊपर की और टंगी हुई है एक गाड़ी है जमीन पर अ--

यह बहुत सी जीप रखी है जो सफेद कलर की दिख रही है एक जीप है जिसके आगे का हिस्सा खुला हुआ है और एक जीप है जिसका आगे का हिस्सा थोड़ा टूटा हुआ है और उसमें --

यहां एक घ र-र-र है जो सफेद-द कलर और लाल कलर का दिख रहा है आगे एक मोटरसाइकिल है जो काले कलर की दिख रही है उसके--

जो काले कलर की दिख रहे हैं कुछ मट्टी है जो पीली और लाल कलर की दिख रही है खेत दिख रहा है वो सफेद कलर का दिख दरवाजा सा देख रहा है ऊपर आसमान है।

कुछ-छ-छ-छ लाइट राइट साइड है जो हैँ--

पीछे सूखे पेड़ पौधे दिख रहे है घास दिख रही है कुछ खा काली कलर की दिख रही है उसकी मट्टी है जो पीले कलर --

उसमें एक दरवाजा दिख रहा है जो सफेद कलर का दिख रहा है नीचे की जमीन है जो काले कलर की दिख रही आधी जमीन है जो काले कलर की नजर आ रही है।

यहां बगीचा है इसमें हरे कलर की घासे उगी हुई है कुछ पेड़ पौधे हैं जो हरे कलर के दिख रहे हैं वहां--

यह जो खेत में खड़ा हुआ है उसने सफेद क लर -लर-की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई है।

मकान दिख रहा है जो सफेद और काला कलर का नजर आ-अ रहा है इधर गेट पड़े हुए हैं।